बहोत सारी बोट्स खड़ी हुई है ओरेंज कलर का येलो ग्रीन वाइट और गुलाबी और लाइन से खडी हुई है और एक मिट्टी टाईप का कलर हैं।

और एक बेलन का फोटो बना हुआ है फैन दिख रहा है डोर दिख रहा है गिलास दिख रहा है दो कुर्सिये दिख रही ऊसमें प्लेट्स दिख रहे है और क्या दिख रहा है जहाँ स्टीकर --

यह छोटा सा मंदिर है किसी के घर माल का इसमे दो-तीन मूर्ति रखी है गोल्डन और इसमे कुछ गिलास रखने का कुछ शककरे रखने इतनी सारी इसमे पूजा कर रहे हैं साइड से--